ये बहोत ही शानदार किसी क्लास रूम का फोटो है जहां पे एक टीचर बहोत सारी लड़कियों को पढ़ा रहा है।

और यहां पे इसकी चल बहुत बड़े-बड़े शानदार पेड़ भी खड़े हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पे मुझे देखने में--

और पानी की बोहत भरा है यहां पे बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई हैं और यहां पे एकदम बहुत बड़ियां फूल भी लगे हुए हैं।

आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही रास्ता का फोटो है पालक का फोटो है पालक में बहुत सारी क हुई है।

जो चौबीस घंटे खुला रहता है यहां पे गाड़ी खड़ी है बंद हो रखा है यहां पे ताला लगा हुआ है यहां पे --

सभी दुकानो ने नीचे टाइल्स लगा रखी है बहुत अच्छी टाइल्स लगा के रखे हैं यहां पे --

आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे की ये भी एक रेस्टोरेंट का ये फोटो मुझे दिखाई दे रहा है।

आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे तीन चार लड़के बैठे हुए हैं जो कि किसी खेत में ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं।